यह एक होटल है जिसका नाम होटल बिसरा वहार रखा गया है।

पीछे कुछ पोस्ट में लिखा भी हुआ है।

आसमान साफ दिख रहा है।

बहोत सारी पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

बाहर एक डस्टबिन दिख रही है।

भीतर नाय किसी का बाल काट रहा है।

और पेड़ भी नजर आ रहा है।

बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं ऊपर फैन दिखाई दे रही है ।

लाइट दिखाई दे रही है खिड़की नजर आ रही है।

प्लास्टिक से बनी हुई कुछ झालर नजर आ रही है।

यहां एक आदमी दिखाई दे रहा है।

सीढ़ी दिखाई दे रही है।

यहां एक पेटी दिखाई दे रहा है एक किट केट का चॉकलेट दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे मिक्सचर का पैकेट भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ सफेद झालर भी नजर आ रही है।

जिसमें कुछ लड़कियां कुछ लड़के कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

ठीक सामने कुछ पेड़ लगी हुई दिखाई दे रहे।

बाहर एक ब्लू कलर की कारपेट दिख रही है।

यहाँ एक पार्क है जिसमें बहोत बड़े पेड़ तथा छोटे-छोटे पौधे भी नज़र आ रहे --

ये बैठने के लिए जगह बनाई गई है।

यहां दो घर दिख रहे हैं।

और पीछे बैठ बैठने के जगह पर दो आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर में तिरपाल नजर आ रहा है ।

पीछे एक पेड़ नजर आ रहा है उसके ठीक सामने बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

एक नल भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी खड़ा हुए दिखाई दे रहा है।

ऊपर कुछ फैन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक मस्जिद है जिसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

में छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं।

इसमें एक तराजू भी नजर आ रही है।

जिसमें जल के फव्वारे भी दिखाई दे रहे हैं।